इस तस्वीर में एक स्टेडियम है और एक क्रिकेट पिच है जो अभी खाली है।

सांस की हमारी नली जो है बहुत अच्छी ज्यादा खुलती हैं और हमे काफी आनंद आता है।

इस गेट पर लिखा है। प्रवेश निषेध है। आम रास्ता नहीं है।

और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम होता है जिससे कि सीलिंग वगैरह नहीं आती है या फिर कोई टकपकता नहीं है बहुत बढ़िया होता है।

और इस साइड पर एक बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है ये बिल्डिंग काफी बड़ी --

और जिसका कि फर्स्ट जो इंस्पेशन होता है फिल्लर वगैरह वो भरे जा रहे हैं और काफी मजबूत और --